यहां पे बहुत सारे टीन के डब्बे रखे गए हैं।

तथा इसमें दो खिड़कियां भी दिखाई पड़ रही हैं।

इसका रंग सफेद रंग में है।

जहाँ पे बहुत सारे हिरन भी चरती हुई दिखाई पड़ रही है|

उसके आगे एक टेम्पु गाड़ी खड़ा है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में जाता हुआ भी हमें नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत सारे फूल लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

कुर्सियों पे दो तीन आदमी बैठे हुए दिखाई पड़ रहे है।

इसका नाम मां भगवती फैमिली रेस्टोरेंट लिखा गया है।

ओ कार का रंग सफेद रंग का है।

तथा एक व्यक्ति भी खड़ा दिखाई पड़ रहा है।

जिसके अंदर एक शटर खुला हुआ दिखाई पड़ रहा है।

तथा घर के रेलिंग में ग्राहक सेवा केंद्र कस्टमर सर्विस प्वाइंट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

त घर के दीवार का रंग सफेद रंग का है।

उसका रंग सफेद रंग का है।

यहां पे एक ब्लू रंग का कुर्सी भी दिखाई पड़ रहा है।

तथा बहुत सारे छोटे मोटे कार्टून तथा बड़े कार्टून भी दिखाई पड़ रहे है।

यह एक पहाड़ का दृश्य है।

यहां पे एक व्यक्ति एक कार को वाश करते हुए दिखाई पड़ रहा है।

यह वृक्ष रोपता हुआ दो बच्चों का दृश्य है।

यह एक मंदिर का दृश्य है।

यह एक बस स्टॉप का दृश्य है।

यहां फर्श पर मैट का भी इस्तेमाल किया गया है।

यहां आस पास एक दो घर भी दिखाई पड़ रहा है।

यह एक रूम का दृश्य है।

इसमें शीशे लगे हुवे है।

यहां पे बहुत बड़े मात्रे में पानी को रोका हुआ दिखाई पड़ रहा है।

और छोले के ऊपर बहोत सारे लकड़ी के चम्मच भी दिखाई पड़ रहे हैं।

तथा बहुत सारे गुपचुप भी हमें दिखाई पड़ रहा है।

यहां पे एक मैडम ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए है।

यहां पे एक साड़ी का रंग ब्लैक रंग तथा एक का रंग लाल रंग में है।

इसके आसपास बहुत सारे बालू भी हैं।